ट्रेवर लिखा हुआ है और पीछे एक इंडियन ऑयल का बॉक्स लगा हुआ है और--

टेबल रखी हुई है और इस टेबल पर कुछ बॉटल भी रखी हुई है और कुछ --

इस इमेज में सामने कुछ सफ़ेद और कुछ लाल रंग की --

इस इमेज में एक काले रंग की कार दिखाई दे रही है और कुछ हरे रंग के पेड़ भी दिख रहे है बाहर एक --

सामने हरी भाई चश्मे वाला लिखा हुआ है और एक आदमी तम्बाकू खा रहा है।

इस इमेज में कुछ हरी घास दिख रही है और कुछ लोग भी दिख रहे है सामने उगता हुआ सूरज दिख रहा है।

इस इमेज में एक पार्क दिख रहा है और कुछ हरे रंग के पेड़ भी दिख रहे है सामने बैठने के लिए एक --